बेची जा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का भी बैंकिंग का ऑफिस वर्क चलता है।

यहाँ दो व्यक्ति दिख रहे हैं कार्य करते हुए। मकान का कुछ कार्य चल रहा है जिसमें व्यक्ति --

यहाँ एक शॉप नजर आते हुए --

यह एक स्कूल है। यहाँ पे अच्छी सी स्कूल नजर आ रही है।

ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे कई प्रकार के पौधे लगाये हुए हैं। बहुत सुन्दर सा वातावरण दिखता हुआ --

यहाँ पे लोग भोत ही --

बहुत ही सुंदर यहाँ पे डिनर करने के लिए व्यक्ति

यह एक उद्योग यहाँ पे काम चलता हुआ दो व्यक्ति --